यहाँ एक मैदान नजर आ रहा है । मैदान के पास एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है । मैदान में काफी बड़ी बड़ी घास लगी हुई है आसपास काफी --